ये कोई स्टोर का दुकान लग रहा है जहां पे बहुत सारे बुक हैं ड-ब्बे दिख रहे हैं बगल मे चेयर है दोनो तरफ आ किताब रखने के लिए डेस्टिक दिख रहे हैं।

और यहां बगल में एक शटल दिख रहा है ये हेयर कटिंग हेयर स्टाइल का है शायद ब्यूटी पार्लर भी है बगल में और यहां पे चार शीडी हैं अंदर रूम में जानें के लिए और बाहर कच्चे-पक्के रोड बने है।

ये कोई बड़ा स झील नजर आ रहा है जहाँ पे किसी चीज की ट्रैनिंग दी जाती है और वो ऊपर आसमान नी बगल में पेड़ और नी एक बोट है जिस पर नंबर वन है।

ऐसा लग रहा है जैसे यहां पे कोई सेलिब्रेशन का है यहां पर बहुत सारे बैलून दिख रहे है औ-र म्म रोज रेड रोज दिख रहे हैं व्हाइट रोज दिख रहे हैं।

व्हाइट बैलून दिख रहे हैं और यहां पे कुछ लिखे हुए हैं ऊपर फैन है फिर यहां पे सजावट ल काफी --

ये कहीं का टेंपल दिख रहा है जो काफ़ी ऊंचाई ऊंचे ऊंचे गुंबद बने हुए हैं इसमें और दो आदमी हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। एक लेडिज और एक जेन्ट्स और एक आदमी खारा है।